इस पिक्चर में बहुत सारा बंबू देखने को मिल रहे हैं।

एक आदमी ने शर्ट नहीं पहना हुआ है एक आदमी ने टी शर्ट पहना हुआ है।

चलता आदमी एक भी देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारा तरह तरह का सब्जी देखने को मिल रहा है।

गाड़ी के सामने पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारा बॉक्स देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में एक ब्लू कलर का एक गोदाम देखने को मिल रहा है।

स्ट्रैट लाइन्स भी देखने को मिल रहा है।

इस तस्वीर में एक घर देखने को मिल रहा है व्हाइट कलर में पेंट किया गया है।

इस तस्वीर में बहुत सारा आदमी देखने को मिल रहे हैं।

टेंट का कलर है ग्रीन और ब्लैक ।

इस तस्वीर में एक फुड ट्रैक देखने को मिल रहा है।